ये पत्थर है और ग्रीन ग्रीन है वो इंसान शायद से कार रिपेर कर रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को।

और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है ग्रीन-ग्रीन कलर के और आसमान भी अच्छा है।